और यहां पर एक एल_ई_डी टी_वी लगा हुआ है।

और यहां पर बहुत सारे लोहे के खंभे भी लगे हुए हैं।

और एक आदमी बाइक लेकर खड़ा है।

और यहां पर बहुत सारे आदमी नहा रहे हैं।

और यहां पर दो आदमी भी है।

यह एक बागान है और यहां पर बहुत साड़े पेड़ पौधे रखे गए हैं अलग अलग परकार के।

और मंदिर के पीछे में बहुत सारे घर है।